इस तस्वीर में सामने हमें एक मॉल टाइप का दिख रहा है जहाँ --

इस तस्वीर में मुझे झील न नजर आ रही है।

इस तस्वीर में मुझे सामने बस दिखाई दे रही है जो बस रुकी हुई है।